खड़ा हुआ है चर्च जैसा निशान बना हुआ है वहां पे खूब सारे लोग आए हुए है और वहां पे खूब सारे पेड़ वगैरह भी लगे हुए है।

यह कपड़ों की दुकान है यहां पर खूब सारे कपड़े है बच्चों के टॉप वगैरा है एक येलो एक ग्रीन है और गाउन वगैरा लेडिस की गाउन वगैरा है।

यह एक माला है यहां पे खूब सारी मालाएं दिख रही है अलग अलग फूलों से बनी हुई है डिजाइन कर रखी है।

दो तीन आदमी औरत बैठे हुए हैं मंदिर पे पूजा करने के लिए।

ये एक सैनी फ्रूट्स की दुकान है हमारा चोमू के बागवानों की यहां पे समान आती है और साथ में ही वहां पर --

यह बेकरी की दुकान है यहां पे कुकीज वगैरह बिस्किट अलग तरह की बिस्किट वगैरह मिलते हैं वगैरह --

साड़ीज कुर्ती कॉटन की लहंगा ओढ़नी वगैरह यहां पे सिल्क जॉर्जेट कॉटन वगैरह कपड़े मिलते हैं।

मतिरे है ऑरेंज है एप्पल है यहां सब ये --

वी उसके पीछे बना हुआ है और वहां पर खूब सारे भीड़ भी लगी हुई है यहां पे लोग देखने के लिए आए हुए है।

बाइक सर्विस वगैरा की दुकान है यहां पे वहां की वॉश वगैरा होती है साथ और ठीक वगैरा ऑटो पार्ट्स की दुकान भी है यहां पर।

दक्षिण लगा जाते हैं कराया आता है और वहां पे उसके पास में दवाइयां वगैरा दी जाती है यहां पे कैंडल वगैरा न --

ये हरे राम ऑडियो के नाम से गाड़ी है डी_जे की बहोत सारे डी_जे लगे हुए हैं।

और उसके आस पास में लाइटिंग वगैरह बहोत अच्छी हो रखी है।

ये एक भारत सरकार वित्त मंत्रालय आयकर विभाग विभाग है इनकम टैक्स का विभाग है वहां पर बहोत सारी --

ये एक सुबोध पब्लिक स्कूल है उसके पास मे एस_जी_एच हॉस्पिटल भी है ये प्ले ग्रुप टू टवेल्थ तक स्कूल है।